यह दोनों व्यक्ति कैप लगा रहे है।

और यह टाईगर के सामने एक जाली लगी हुई है जिससे यह टाईगर अंदर की ओर बंद है।

जो कि एक काले रंग की एक नीले रंग की और एक बाईन कलर की साड़ी पहने हुए --

जो कि कत्थई रंग की स्वेटर पहने हुए है।

जो की आपस में बात कर रहे है।

कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

पीछे इसमें पीले रंग की दीवाल --

इसमें बहुत सारा समान भी है।

सामने एक इसमें छाता जैसा लगा हुआ है।